सामने की तरफ भी पेड़ लगे हुए हैं और पीछे लंबे-लंबे पहाड़ दिख रहें हैं।

और दोनों तरफ बेैनचे लगी हुई हैं बैठने के लिए बैटरी रिक्शे के उप्पर मयूरी लिखा हुआ है।

है यहाँ पर दो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे है और नीचे छोटे-छोटे पहाड़ बने हुए हैं।

इसके ऊपर वी मार्ट लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में का --

पीछे की तरफ हमें कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है एक टावर नजर आ रहा है।

पीछे की तरफ हमे महादेव की फ़ोटो नजर आ रही है।

यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ हैं जो की सही छत पर खड़ा है वहाँ पर टाइल्स लगी हैं नीचे की तरफ।

ऊपर की तरफ उनमें एंगल नजर आ रहे हैं।

सामने हमें बहुत ही ऊंचे-ऊंचे से रुई जैसे पहाड़ नज़र आ रहें हैं जिनमें से धुआ उठते हुए नज़र आ रहा है।

हमे यहाँ पर एक डांस क्लास नजर आ रही है जिसमे हमे एक बड़ा सा शीशा नजर आ रहा है शीशे के ऊपर हमें घड़ी नजर आ रही है।

हमें यहाँ पे एक दरवाजा नजर आ रहा है जिसके बीच मे हमे मेहराब नजर आ रहा है।

शॉप नंबर सत्रह लिखा हुआ है यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

और यहाँ पे कारे निकल के आ रही हैं एक बाइक खड़ी हुई है।

रोड के बीच में घंटा घंटा घर बना हुआ है जिस में एक घड़ी लगी हुई है।

यहां पर काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं जिसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े नजर --

और नीले आसमन नज़र आ रहा --

शोरूम मे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो एक के हाथ मे गिटार है और एक साइकिल मे बैठा है और पीछे येलो साइकिल --